यहाँ पर चॉकलेट बिमल- उमल गुटका टूथ -सूत प्लस भी गुटका है मैं तो बहोत खाता हूँ लेकिन मेरे घर वाले गरियाते है ना इसीलिए ब्रेड -म्रेड दुकान -मुकान कालोनी - मालोनी भी है का क्या उधर लैपटॉप मेपटाॅप सब दिख रहा है लाइट भी दिख रहा हैं।

ऐसा हम लोग के घर के पास राहटना या आइसा मूर्ति कौन बनाया होगया यरर आइसा तो मई काभी देखबा नई हु मेरा भी कोई जे बनाया होगा आइसा मई भी बनवाऊँगा यार जितना पैसा लगेगा ले लेना --

इतना अच्छा बिल्डिंग यहाँ सीसा बिल्डिंग का का एक दो तीन चार पांच छो ठो लाइट -वाईट बहुत दिख रहे है झूलनिया तार -वार बादल भी यहाँ से बहुत साफ़ -साफ़ दिख रहा हैं।

पोस्टर -ओस्टर इधर इतना अच्छा सीढी है ना यार ऊपर गजब का है यार मैं यहाँ पास घूमता- उमता न यार त इतना इच्छा में अपने--

यहाँ पर इतना अच्छा सोफा लगा है इधर पीछे आदमी -उदमी है यहाँ इतना अच्छा सीसा लगता है मुँह धोने के लिए हैं यार --।

इतना अच्छा काटकर इधर उधर टाइल्स भी लगा आइसा पहाड़ उहाड़ को क्यूँ गंदा स करते हैं यार पहाड़ को तो साफ सुथरा उधर भी करते है यार जंगल वंगल को बिगाड़ देते हैं यार इतना--